साइड की तरफ मुझे उपर की तरफ मुझे कुछ. पेड़ का बड़े बड़े पेड़ नजर आ राहे लोहे के पोल वगैरा नजर आ रहे कुछ बच्चे खेलते नजर आ रहे।

सामने की तरफ मुझे एक चाट की कटोरी नज़र आ रही है छोले टिके की ऊपर एक तरफ से प्याज डाले नज़र आ रहे है सामने तरफ एक म नज़र आ रही है।

यहा गाड़ी नीचे तरफ मुझे पोल नज़र आ रहा है। लोहे के बने हुए व्हाइट सा हरी-हरी एक लड़की --

सामने की तरफ मुझे एक ब्लू कलर की स्लाइड वगेरा नजर आ रही है मुझे एक रेड कलर की स्लाइड नजर आ रही है सामने तरफ मुझे एक सफ़ेद कलर का एक पत्थर सा नजर आ रहा है सा सामने कि तरफ मुझे एक--

सामने की तरफ मुझे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है स्विमिंग पूल के अंदर कुछ लोग नजर आ रहे है सामने की तरफ मुझे एक पत्थर की पहाड़ सा नजर आ रहा है जिस के उपर की तरफ काफी पानी आता नजर आ रहा है इसी के साथ --